कितने को नजर आ रही है फूल बना। पूल के अंदर एक नीला सा पानी भरा। पानी के ऊपर के साइड में गोल अकार का सरकाल बना हुआ। उसमें अलग अलग कालो कलर के गोल बना एक नीला एक पीला है।

बनी हुई लोह के ठीक पास में एक लाइट लगी हुई जो की गोल्डन कलर की लाइटे लगी हुई की लाइटो के ठीक पास में देखा जाए तो एक बड़ी सी शिप खड़ी हुई नजर आ रही है उसके ठीक पास में देखा जाए तो ए कई सारे लोहे के खंभे लगा खंभों के पीछे के साइड में बड़ी बड़ी लाइट लगी। लाइटों के ठीक पास में देखा जाए तो यह --

जैसा कि अपनोको दिख रहा है एक गार्डन बना हुया। गार्डन क्योकि छोटे बच्चो के खेलते हुए नजर आ रहा हे। गार्डन की ठिक पास में देखा जाए तो छोटी-छोटी घासे लगे हुइ घासो ठिक पास में कई सारे झाड़ लगे हुए।

पीछे के साइड में देखा जाए तो एक और एक लड़का खड़ा हुआ। जिसमें पीले कलर का शर्ट पेना रेड कलर का जैकेट पेहेना हूआ। ऊसके ठिक ऊपर पीछे की साइड में देखा जाए तो छोटा सा एक मंदिर बना। उसके पीछे के बड़ी बड़ी मालटिया वनि हूइ है। मालटिया --

चढ़ाव बनी हुई हैचढ़ाव ठीक पास में देखा जाए तो कई लोग खड़े हुए लोगों की पास में एक मंदिर बना हुआ मंदिर जो की ऑरेंज कलर का मंदिर है मंदिर की टिक पीछे के साइड में झाड़ लगा हुआ हैझाड़ काफी बड़ा है।